हुए। एक आदमी बैठा हुआ है जो फोन चला रहा है। उसने सर पर नीले रंग की टोपी पहनी है।

यहाँ पे एक बहोत बाद मेदान दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ हिस्से मे घास लगी हुई है और कुछ में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक बस भी दिखाई दे रही है और पास में दो मोटर साइकिल भी खड़ी हुई हैं।

एक बाइक अभी-अभी आती हुई दिखाई दे रही है। धूप पड़ रही है। दुपेर का टाइम है।